यहां एक रूम दिखाई दे रहा है।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

डैम में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ।